ये हाथी का यही काम होता है की ये इधर से उधर घुम रहे है अपना ग्रीन सब्जियाँ खा रहे है ग्रीन ग्रास का रहे है।

यहाँ पे जो डेली युस करने वाली चीजें है वो यहाँ पे मिलती होगी जैसे की बेसन --

जैसे की हम देख पा रहे है यहाँ पे जो अअअ लोग अपने कार की डेंटिंग पेंटिंग करवा रहे है यहाँ पे एक नई कार है।

कोई प्रॉब्लम भी न--

को रखा जाता है। काफ़ी तरह छतरी का होता है जैसे की हमें पता चल पाता है किसी भी चीज का वेट क्या है क्या वेट है क्या नहीं वेट है।